इस शोरूम का नाम नेक्सा है यहाँ से अनेक लोग कार खरीदते हैं।

यह एक जैन मंदिर है जिसमें श्री श्वेतांबर नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति स्थित है।

यह मंदिर चंपापुर बिहार में स्थित है यहां अनेक लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।

यह एक सब्जियों का गोदाम है जहाँ पर अनेक प्रकार की व ताजी-ताजी सब्जियाँ रखी जाती हैं।